डम्बल नज़र आ रहे हैं कुछ पिंक और रेड कलर के और ब्लैक कलर के डम्बल नज़र आ रहे हैं और हमें यहाँ कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं जो ब्लैक कलर की--